हरी ह भरी वादियां दिखाई दे रही हैं। ऊँचे नीचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हरा-भरा --

यह एक कार्यालय का चित्र दिखाई दे रहा है जहां महिलाएं और दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

अलग अलग रंग के गुब्बारे लगे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक सफेद रंग की कार का चित्र है।